एक पार्लर है पार्लर में एक आदमी फेसिअल करवा रहा है उसके मुँह में और हाथ में पुरे लेप लगे हुए है सफेद रंग के और उसके आँख में दो खीरा लगा हुआ हैं ।

ये एक ड्राइंग क्लास हैं यहाँ पे बहोत सारे बच्चे बैठके ड्राइंग बना रहे है ।

और नदी के आसपास खेत हरे भरे खेत खलिहाँन नजर दिखा-न- दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है खुला आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल भरे हुए हैं ।

ये एक रास्ता है रास्ते के साइड में दो बुक मॉल्स दिखाई दे रहे है।

काली सुहानी रात के रात में ये बीच में मस्जिद हैं मस्जिद के ऊपर बहोत खूबसूरत सी लाइटिंग की हैं जो हरे लाल बैगनी कलर की हैं जो कि बहोत खूबसूरत हैं।

एक तरफ काला है और एक तरफ पीला है सामने में दो दरवाजा है दरवाजे के ऊपर एक झण्डा लाल रंग का लहर रहा है सामने से बहुत सारा जगह से रास्ता है ऊपर खुली आसमान--

एक लकड़ी कि शाखाएं तालाब के बीच में लम्बे से खड़ी हुई है जो कि गुलाबी और पीले रंग कि हैं ।